बड़ा बगीचा दिखाई दे रहा है। जे--

रहा है जहां पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए दिखाई --

फोटो में हमें एक बड़ी सी--

दे रहे हैं और कुछ कुर्सियां रखी हुई दिखाई--

रही है जहां पर हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई--

बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है। जहां पर कुछ हरे भरे पेड़--

फोटो में हमें एक हार्डवेयर दिखाई --

रहा है जहां पर कुछ--

जहां पर कुछ यात्री गढ़ आते जाते दिखाई--

बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

और हरे भरे पेड़ पौधे--